यहाँ पर एक सड़क है और ब एक बस खड़ी है सडक के किनारे जो जिस बस का रंग जो है ओलिव ग्रीन कलर का है और --

यहाँ पर एक पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है और इस पेट्रोल पंप बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है जैसा की मार्शल है।

और रेलिंग के उस पार में एक पार्किंग एरिया है जहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बहुत तरह की जैसे जस्ट लाइक् फॉर व्हीलर टू व्हीलर्स --

और यहाँ पर बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हैं।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि तीन तल्ला बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में बहुत सारी दुकानें हैं।